इस इस चित्र में रावण के दो गुड्डे रावण और कुमकरण के गुड्डे दिख रहे हैं ।

यहां पर एक सफेद और लार लाल रंग की वाहन दिख रही है। वाहन के कांच का रंग काला है और --

गुलजस्तों का दुकान लगाया हुआ दिख रहे हैं बहोत सारे यहाँ पर व्यक्ति लोग दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने पीले रंग के कप --

और यहाँ पे यहाँ घर में अ कुछ लम्बे-लम्बे खम्भे भी लगे हुए है। इन खम्बो पर लाल रंग किया गया है और यहाँ पर बोहोत सारे खड़कियाँ भी नजर आ रही है।

यहाँ एक जगह पर पानी निकालने के लिए कल दिख रहा है और कुछ पेड़ छोटे दिख रहे हैं और घास फुस भी रखें हुए हैं।

यहां पर एक बड़ी सी जगह में कुछ लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आगे एक --

यहां पर रेल रेल रेलगाड़ी के कुछ पटरियां दिख रही --

यहाँ घर पर सफेद रंग किया गया है और लाल रंग से खिड़कियों पर रंग किया गया है | यहाँ पेड़ की परझाई भी दिख रही है ।